लड़किया भी है और लड़के भी है।

ऑरेंज कलर का पहनी है बहुत भीड़ है लाईट जल रही है रात का सीन है ।

यह बैंक है एस. बी. आई. बैंक है यहाँ पैसा जमा करते है।

यहाँ अधिकारी बैठते होंगे कर्मचारी होते होंगे।

इसने गन्ना रखा हुआ है और उसके चारो और बैठें है घूँघट डालके ।

पुरुष लोग खड़े है कुछ लोग बैठे है।

यहाँ बोहोत सारे सामान है खाने -पीने के अलग तरफ होते हैं।

पौधे लगा रही है फूल लगा रही है अच्छे से गार्डनिंग कर रही हैं ।

गन्ना है यहाँ छठ पूजा हो रहा है।